एक आदमी हाथ में जैकेट लिए खड़ा है दो तीन वर्कर को देखा जा रहा है अं दो टिने का ट्राम दिख रहा है।

अ टब वाला दिख रहा है एक स्कूटी लगा हुआ है जो ब्लू रंग का है उसके--

अं स सामने में एक टायर रखा हुआ है जो मैं ब्लैक कलर का है ऊपर एक बैनर है।

और कुछ टेबल रखे हुए जिसके ऊपर दो कांच का गिला--

एक जैकेट दिख रहा है जो कि चेयर के ऊपर रखे हुए है।

दिख रहा है और अंदर में एक चेयर है जो रेड कलर का है।

बड़े-बड़े पेड़ पौधे देखे जा रहे है कुछ लोहे के जाली वगैरे दिख रहे हैं कुछ आदमी है जो हाथ में बैग ली --

आदमी का शर्ट का वाइट कलर का है ब्लू कलर का जींस पेहने हुए है रेड कलर का --

इस फोटो में हमे एक गेट दिख रहा है जो व अ पूरा फुल --

बेस्ट टाइप का लगा हुआ है जो वाइट कलर का ऊपर कुछ एल_इ_डी लाइट वाला दिख रहे हैं फॉल सीलिंग का कलर ब्राउन कलर का है कुछ बड़े भी लाइट दिख रहे एक आदमी दिख रहे इसका--

इस फोटो में एक भगवान का मूर्ति दिख रहा है जो--

और उसके चारों साइड टाइल्स वैगैरह लगे हुए है। ऊपर सीलिंग पे कुछ रेड कलर का दिख रहा है।

या कुछ ये शुभ और लाभ लिखा हुआ है नीचे एक मैट बिछा हुआ है जो रेड कलर का है।

इस फोटो में हमें दो तीन दुकान दिख रहा है। जिसमें से एक--

दुकान बंद है और एक दुकान ओपन है उसमें से--

बैनर लगा हुआ है जो क्लीनिक है लिखा हुआ है बैनर का कलर ब्लू कलर का है।

इस फोटो में हमें कुछ ऑफिस टाइप का दिख रहा है जिसमें व्हाइट कलर का बैनर लगा हुआ है जिसमें कुछ--

डिजाइन वगैरे बने हुए जो रेड अ राउंड सर्कल वगैरे में है।

बेंच वगैरा लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के--

इस फोटो में हमें एक मीटिंग हॉल टाइप का दिख रा जिसके पीछे एक--

एल_ई_डी लाइट अं लगा हुआ है और कुछ एल_ई_डी --